और आप लोगों को पता ही है कि बर्थडे सेलिर्बेशन करने के लिए भी हम कैफे में जाते हैं कुछ छोटी-मोटी पार्टी हो तो उसके सेलिर्बेट करने के लिए हम कैफे में जाते हैं जहां पे हमें हर टाइप की सुविधा मिल जाती है।

ईसाईयों का पूजा स्‍थल चर्च ही माना जाता हैं तो वहाँ पे एक फादर होते हैं जैसे हमारे हिन्‍दू में मंदिरों में पुजारी होते है जब हम जाते हैं उनसे कुछ इनफॉरमेशन लेते हैं ऐसे ही क्रिस्टिचयन में --

अशोक चक्र अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिये जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है।

बैंक ऑफ बड़ौदा यह ऐसा एक बैंक है जहां पे बैंक खाता खुलता है।

क्‍योंकि आप लोगों को पता सैलून एक बहोत ही कॉस्ट्ली जगह है जहाँ पे मतलब जाने के लिए बहोत ज्‍यादा कॉस्ट पड़ता है पेमेन्‍ट पे करना पड़ता है तो गांव के लोग वो पे नही कर पाते हैं तो उनके गांव में एक नाई की दुकान होती है जहां पे वे अपनी बाल की कटिंग के लिए अपनी स्शेविंग के लिए जाते हैं।

यहाँ पे बहुत ठंड रहती है और यहाँ प्‍लेन से लोग बाग घूमने के लिए जाते हैं क्‍योंकि गर्मियों में वहाँ बहुत ही ठंड रहती है और ठंड में तो आपको पता ही है हर जगह बर्फ पड़ती है पहाड़ों में।